बिल्डिंग काफी ऊंच्ची बनाई गई है और बिल्डिंग के ऊपर --

यह दृश्य एक जिम के अंदर का है। जहां जिम के अंदर --

पार्क के चरों ओर बड़े-बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे हैं और --

पर मछलियां घेंघे केकड़े आदि।

स्टेज का है जहाँ स्टेज के ऊपर एक सोफा डाला हुआ है और सोफे पर --

और पैलेस का नाम है आर बी एस पैलेस और यहां पर --